gimp के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस image की editing शुरू करने से पहले मैं संक्षेप में आपको आपकी वास्तविक photography के लिए raw का प्रयोग करने के बारे में बताना चाहती हूँ
यदि मैंने इस image को jpeg में shot किया होता तो मुझे इसे इनकोड करने के लिए brightness के 256 चरण लेने पड़ेंगे
आप देख सकते हैं कि यह काले और सफ़ेद के नजदीक हल्के नीले और हरे रंग के tint के साथ है और मूल रूप से यह सिर्फ gray है
और jpeg में आपके पास gray के 256 भिन्न मान होते हैं
काले के लिए 0 और सफ़ेद के लिए 255
और इस image में बिलकुल भी सफ़ेद रंग नहीं है और केवल थोड़ा सा ही काला रंग है
अतः इस कमरे के केवल एक छोटे से भाग का प्रयोग किया जाता है
मैं आपको दिखाउंगी कितनी देर के बाद
मैंने इस image को raw में shot किया था और camera camera raw raw images को 12 bit data format में संग्रह करता है
यह वह image है जो मुझे values का प्रसार करने के बाद raw raw converter से प्राप्त हुई है और यहाँ मेरे पास gray के लिए 256 भिन्न values हैं और अब मैं इस image को edit करना शुरू कर सकती हूँ
इस image में यहाँ पहली वाली की तुलना में अधिक विवरण संग्रहीत हैं
यह वह पहली image है जो मुझे याद है और यह वह है जो मुझे कन्वर्जन के बाद प्राप्त हुई है
दूसरी image postprocessing करने के लिए एक अच्छा आधार है जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा picture प्राप्त होता है जो बिलकुल पहली वाली image के image है किन्तु बेहतर दिखाई पड़ती है
अब मैंने gimp में वे दोनों images खोल ली हैं अतः दोनों images के histogram पर एक नजर डालते हैं
histogram image dialog में छिपा हुआ है
किन्तु हम image dialog पर 3 विभिन्न तरीकों से पहुँच सकते हैं पहला तरीका tool bar पर है
दूसरा तरीका यहाँ access the image menu पर click करके dialogs पर click करना है
और तीसरा तरीका सीधे image पर राईट click करके फिर image पर और उसके बाद dialog और क्रमशः histogram पर click करना है
यहाँ पहली image का histogram प्रदर्शित किया गया है
इसे थोड़ा बड़ा करें और यहाँ आप image में विभिन्न रंगों के विभिन्न pixels का वितरण देख सकते हैं
digital image संख्याओं द्वारा बनाई गई painting के image होती है
जब आप इस image को zoom करते हैं तो आपको बहुत से छोटेछोटे tiles दिखाई देते हैं और इनमें से प्रत्येक tiles अलग रंग की है जिसे एक pixel कहा जाता है
और प्रत्येक रंग को एक values द्वारा परिभाषित किया जाता है और मैं आपको color picker की मदद से यहाँ ये मान दिखा सकती हूँ
जब मैं colour picker का प्रयोग करती हूँ तो मुझे लाल हरे और नीले रंग के लिए values प्राप्त होती हैं
इस image में लाल in का image हरे और नीले in की तुलना में थोड़ा कम है
हरे और नीले रंग का मान आसपास है और मान बिल्कुल समान है
संख्याओं द्वारा painting digital photography है
यहाँ इस image में मेरे पास 0 से 255 तक की संख्याएं हैं और यहाँ हमारे पास एक वास्तविक घना भाग है किन्तु मुझे नहीं लगता कि यह अंतिम image में प्रदर्शित होगा
मुझे लगता है कि image का वास्तविक भाग यहाँ लगभग 80 से शुरू होता है और यहाँ image का सबसे चमकदार भाग लगभग 200 पर है
अतः हमारे पास 0 से 256 तक के लिए स्थान है किन्तु हम केवल 120 का प्रयोग करते हैं जो उस data के आधे से कम है जो हम प्रयोग कर सकते हैं
और उसके कारण image की अधिकांश जानकारी यहाँ गायब हो जाती है
दूसरी image के histogram पर एक नजर डालते हैं
चूँकि यहाँ हम देख सकते हैं कि इन histogram में पहली इमेज की तुलना में अधिक data है किन्तु curve की form समरूप होती है
आप इन 2 histograms की तुलना कर सकते हैं
दूसरे image में विवरण को बढ़ाया जाता है ताकि वह समस्या जिसे मुझे यहाँ हल करना है दूसरी image को पहली image की तरह compressed बनाना है
किन्तु इसमें थोड़े और विवरण होने चाहिए और इसमें पहली image में इसकी तुलना में थोड़ा अधिक contrast होना चाहिए
इस image पर कार्य करना शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मुझे अंतिम tutorial रिकार्ड करते समय gimp यूजर interface के बारे में पता चली हैं
जब आप image window में टैब दबाते हैं तो tool box गायब हो जाता है और image को यथासंभव बड़ी करने में मेरी मदद करता है और मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार tool box को on या off कर सकती हूँ
अतः मैं उसे बेहतर देख सकती है जो मैं यहाँ कर रही हूँ और आप भी इसे बेहतर देख सकते हैं
इस image की editing शुरू करने के पहले मुझे कुछ settings बदलनी होंगी
अतः मैं फ़ाइल preference पर जाती choose और यहाँ मैं window management पर जाती choose और यहाँ विकल्प का चयन करती choose
टूल docks को ऊपर रखें और docks को ऊपर रखें और शेष विकल्पों को वैसा ही छोड़ देते हैं
मेरे द्वारा ok दबाने के बाद gimp विज्ञापन के अनुसार कार्य करता है
मैं tools box से tools चुन सकती हूँ और मेरे द्वारा चयन किए गए tools के सभी विकल्प प्राप्त कर सकती हूँ
मैं पुनः image पर click कर सकती हूँ और tool box को on और off करने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं
अगर image लेवल में है तो पहला काम इसको जांचना है
इस image में यहाँ कोई विश्वसनीय मानव निर्मित संरचना नहीं है अतः मैं यह जांच करने के लिए कि grid विधि का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ कि image सीधी है
जल की सतह काफी अच्छा सुराग है
किन्तु हम क्षितिज नहीं देख सकते हैं और जल की चमक भी थोड़ा भ्रामक हो सकती है
यहाँ यह क्षितिज नहीं है बल्कि नदी में एक curve है
अतः मेरे पास कोई वास्तविक सुराग नहीं है कि ruler को कहाँ set किया जाए और क्षितिज की जांच करें
मुझे अभी सिर्फ अपनी आँखों पर विश्वास करना होगा जो मेरे अनुसार photography में कुछ करने का सबसे खराब तरीका है
अब मैं rotate tool का चयन करती choose और मैं corrective backward के बजाय normal forward चुनती choose और मैं image के रूप में प्रिव्यू में set करती choose और grid के रूप में नहीं
ok image पर click करें
यहाँ center में center of rotation नामक एक point है और image इस point के चारों ओर घूमेगी
और यहाँ वह dialog दिया गया है जहाँ हम वह angle angle set कर सकते हैं जिस पर हम image को घुमाना चाहते हैं
यहाँ हमारे पास एक slider है जो image को घुमाने में here मदद कर सकता है किन्तु आप देख सकते हैं कि इसे handle करना कठिन है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस image को इतना झुकाना चाहिए
अतः यहाँ से वापस शून्य पर जाते हैं और अब मैं image को घुमाने के लिए यहाँ सिर्फ स्टाइल का प्रयोग करुँगी
मुझे लगता है कि image दायीं ओर थोड़ी सी झुकी है अतः मुझे image को बायीं ओर यानी वामावर्त घुमाना होगा अतः मुझे ऋणात्मक image रखने होंगे
अतः मैं तब तक angle angle को बदलना जारी रखती हूँ जब तक मुझे सही और सीधी image प्राप्त नहीं हो जाती
अतः मैं angle को025° पर set करती हूँ
इस window को वापस खींचें और घुमाने के लिए click करें और इस operation के परिणाम की प्रतीक्षा करें
अगला चरण cropping है
image में मैं यहाँ जलयान पानी और इन पक्षियों को रखना चाहती हूँ
और मैं इस image को यहाँ घास में नहीं रखना चाहती हूँ और इस भाग को यहाँ नहीं रखना चाहती हूँ और वास्तव में मैं इस पर निश्चित नहीं हूँ कि मुझे मेरी image में यह नदी का किनारा रखना है या नहीं
और मुझे लगता है कि मैं image के इस भाग को crop करुँगी क्योंकि बाद में मैं इस image का सर्वाधिक अँधेरे वाला भाग रखना चाहती हूँ
यानी यहाँ पक्षियों जलयान और फिर पेड़ों जलयान के पीछे किनारा और अंत में पानी और आकाश को प्रदर्शित करना चाहती हूँ
और image का यह भाग अत्यधिक घना है
मैं इस image के इस भाग में zoom करना चाहती हूँ चूँकि मैं नदी के यथासंभव भाग को शामिल करना चाहती हूँ किन्तु नदी के किनारे का कुछ भी नहीं रखना चाहती हूँ
अतः मैं यहाँ hot की z दबाकर image के उस भाग में zoom करती hot
यहाँ दूसरी उड़ती हुई चिड़िया है
अतः मैं बाईं ओर जाती हूँ और मैं पैमाने को किनारे के करीब खींचती हूँ और इसे यहाँ छोड़ देती हूँ
और shift + ctrl + e दबाती हूँ जो मुझे image पर वापस लाता है
अब मुझे crop tool का चयन करना होगा और इसमें कुछ विकल्प set करने होंगे
मैं 2:1 का fixed aspect ratio fixed aspect ratio रखना चाहती हूँ
और प्रीव्यू में मैं थोड़ी मदद के लिए rule of thirds set करती हूँ जो मुझे कुछ सहायक लाइनें प्रदान करेगा
देखते हैं कि यहाँ क्याक्या शामिल है
यहाँ यह चिड़ियों का एक समूह है और यहाँ एकमात्र चिड़िया प्रकट होती है
अब आप rulers away पर click कर सकते हैं
image के निचले भाग पर पानी है किन्तु मुझे लगता कि इसमें पर्याप्त पानी नहीं है और अत्यधिक आकाश शामिल है
मैं यहाँ इस एक चिड़िया को खो सकती हूँ क्योंकि मैं image में इस चिड़ियों के समूह को रखना चाहती हूँ
अब मैं साधारणतया इसे नीचे खींचती हूँ और मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा दिखता है
अपने कार्य की जांच करने के लिए मैं rule of thirds का चयन करती हूँ
मेरी आँखें बहुत खराब नहीं है क्योंकि मैंने image को तीन अलगअलग भागों में यानी जल पेड़ और आकाश में विभक्त किया है
जलयान रुचिकर बिन्दुओं में से एक है
यह चिड़ियों का समूह दूसरा रुचिकर बिंदु है और यह image का 1/9th वां भाग है
मुझे लगता है कि यह कार्य करेगा इसलिए मैं crop करने के लिए image पर click करती हूँ
image को बड़ी करने के लिए tab और shift + ctrl + e दबाएँ
मुझे लगता है कि हमने image को क्रॉप करते हुए अच्छी शुरुआत की है और इसके बाद image के साथ जो कुछ भी करना है वह मैं आपको अगले tutorial में दिखाउंगी
अलविदा कहने से पहले मुझे इस image को सेव कर लेना चाहिए जो मैंने पहले ही कर लिया है
मैं image को fog xcf के रूप में xcf करती हूँ और xcf gimp के अपने फ़ाइल format का extension है और इसमें लेयरों के बारे में बहुत save महत्वपूर्ण जानकारी और अनडू जानकारी है और gimp से संबंधित बहुत save अन्य जानकारियाँ शामिल होती हैं
मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी
मुझे बताइये कि आपको क्या पसंद आया info @meetthegimp org पर ईमेल करके मुझे बताइये कि मैं किस तरह इसे और बेहतर बना सकती हूँ
अधिक जानकारी
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद